और यहाँ पे एक गाय है वो चर रही है और बहोत ही शानदार तरिके से ये काम हो रहा है।

और एक लाइट वाली मशीन भी दिखाई दे रही है और नीचे बहुत छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और साइड में बीस पच्चीस आदमी हैं वो खेल रहे हैं।

और पीछे की तरफ मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं सामने मुझे प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है।

और यहां पर मुझे दूर-दूर तक बहोत बड़े-बड़े घर दिखाई दे रहें हैं और ये गेट भी दिखाई दे रही है।

और यहां पे एकदम मजा आ रहा है और नीचे का फर्श एकदम साफ स्पॉट है और इतना भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है।

यहां पे मुझे एक एयरपोर्ट नजर आ रहा है जिसका नाम है बालू घाट एयरपोर्ट और यहां पे मुझे गेट भी नजर आ रही है।

यह चित्र एक दुकान का है जहां पे रस्सियां बनती है और मुझे एक गाड़ी दिखाई दे रही है।

ग्रिल वाली घर भी खड़ी हुई है और शानदार तरीके से एक रिक्शा भी दिखा रहा है ऐसे रिक्शा हर किसी को नहीं मिल --

ऊपर लाइटें भी लगी हुई हैं और यहां पर ए_सी भी लगी हुई है और यहां पर बहोत मजा आ रहा है।

और नीचे की मिट्टी भी बहुत अच्छी है और यहां पर आसमान एकदम साफ दिखाई दे रहा है।

और दो कांच के दिखाई दे रहे हैं और यहां पे बहोत ही शानदार फर्श दिखाई दे रहा है।